इदर लाइट का भी है देखो कैसा खड़ा देख रहे हमको भी ये देखो टाटा सिम इदर फुल्ल लोड में है --

यह बहुत निटी से अच्छा देख रही ये रात के पास लाइटिंग भी अच्छा है।

देखो ये रेल स्टेशन है ये रेल स्टेशन पास मे देखो कितने पब्लिक हमें दिखा रहे इधर देखो काउंटर भी देखे --

दूसरा आदि मोबाइल निकालने का फोटो खिच रहे ये सब देखो शाम पे स्प्रे बोतल पानी का देख रहे--

कव्हर पकडणे का जा रहे रिक्षा दिख रही एक आदमी स्कूटी पकड़ने का हमको दिख रहे वो ब्लू कलर वाला स्कूटी है।